इस तस्वीर में मुझे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।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

मुझे कुछ कैमरे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे निर्मला फैशन का बोर्ड दिखा --

इस तस्वीर में मुझे एक मेला दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक गोडाउन दिखाई दे रहा है।